मालिक जो रेड टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना वाला आदमी से बात कर रहा है।

फिर दोनो स्तूपो का पीछे दो स्तर का बिल्डिंग है।

दो लेबर जो सीमेंट का काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

और तीसरा लेबर आयरन रोड में खड़ा करते हुए देखने को मिल रहा है।

सामने एक येलो घर भी दिखाई दे रहा है।

टंकी का आगे ब्लैक गोल्डेन व्हाइट कलर का गेट भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है।

ये दीवार को ब्लू कलर से पेंटिंग किया गया है।

और ऊपर एयरटेल का साइन बोर्ड देखने को मिल रहा है और टाटा स्काई का भी--

बहुत ज्यादा आदमी जो एक बोट को चला रहा है।

इमेज में बहुत ज्यादा एम्पलाई का ऑफिस देखने को मिल रहा है।

और बाजार का सामने एक स्कूटी देखने को मिल रहा है जो ब्राउन कलर करके है।

रास्ता का एंडिंग में एक गेट देखने को मिल रहा है जो लाल कलर करके है।

घर का आगे एक व्हाइट कार को पार्किंग करते हुए दिखा रहा है।

इसका आगे एक छोटा सा गेट भी देखने को मिल रहा है और राइट तरफ में एक साइन बोर्ड भी देखने को मिल रहा है।

हमें कुछ कुछ प्रेम भी देखने को मिल रहा है और सीलिंग में हमें एक पंखा भी देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक खुला मैदान देखने को मिल रहा है।

में तीन बैठने का जगह देखने को मिल रहा है।

और तस्वीर के लेफ्ट साइड मे हमें एक घर देखने को मिल रहा है।

ये इमेज में एक साइबर देखने को मिल रहा है।

जिसमें दो कंप्यूटर देखने को मिल रहा है।